इमेज में शंकर जी की मूर्ति है।

भक्त प्रहलाद की मूर्ति लगी हुई है।

एक जेंट्स खड़े हुए हैं।

आं सभी का फेस एक्सप्रेशन अलग-अलग है।

बहोत सारे गमलें लगे हुए हैं। गमलो में पौधे लगे हैं पेड़ लगे हुए हैं।

बिजली के खम्बे लगे हैं।

और बैनर पर रेड कलर से लव- कुश गारमेंट्स --

बाइक्स खड़ी हुई हैं। बिजली का खम्बा लगा है।

कुछ लोग बैठे हुए हैं।

लाइट्स लगी हुई हैं।

होटल पर केरेला होटल वेज एंड नॉन-वेज रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।